कलरों का है और इसमें एक सामने वाटर कूलर भी रखा हुआ है जिससे पानी आता है ठंडा--

बहोत सारा कुछ लगाया हुआ है और इसमें बहोत सारे टेबल लगाए हुई हैं सामने--

पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक वेगैरे भी लगाई हुई हैं दो बंदे वहां पे बैठे हुए हैं और--

अच्छा लग रहा है और एक कुआं भी है और एक दरवाजा भी है वहां पे लगा हुआ सामने एक--

मझा भी पड़ा हुआ है सामने और ईंटें भी है और इसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है जो कि अच्छे लग सामने उसके --

और इसमें इसके सब ऊपर बहुत एक बोर्ड बना हुआ हैं और उसके सामने बहोत सारे मोटरसाइकल वगैरा लगे हुएं हैं।

बंदा चाय बना रहा है और दो बंदे चाय पी रहे हैं और उसके सामने दो बाइक एक बाइक खड़ी है एक साइकल खड़ा है।

स्कैनर भी पड़ा हुआ है इसके हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर भी है।

और उसमें जिसमें वो बैठा है उसमें शीशे भी लगे हुए--

तिरंगे की है नीचे जीरो लिखा हुआ है और--